बना हुआ है। पीछे में वाइट दीवाल है और बहोत सारा चीज़ देखने के लिए मिला है।

तो ऐसे जो बैलून तैलून है वो दोनों बगल से बिच मा आदमी बैठा हुआ है चश्मा पेहना।

कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है।

ये स्टैंड कैमरा है। अच्छा लग रहा है देखने में।